सामने की ओर कुछ लिखा हुआ है अवश्य ही कोई चेतावनी या कोई संरक्षण केंद्र के सुचना लिखी हुई है। यह एक चिड़िया घर है।

किसी घर या किसी मंदिर के आगे यह प्रतिमा दिखाई जा रही है गौतम बुद्ध की और यह तीन प्रतिमा हम देख सकते हैं।

किसी शादी अथवा प्रसंग की यह तस्वीर है | यहाँ हमें दूल्हा दुल्हन की फोटो भी दिख रही है और कुछ ग्राहक मतलब यहाँ पर मेहमान दिख रहे हैं।

किसी पेट्रोल पम्प का टैंकर यहां पर हमे दिख रहा है जो कि टाकी भर रहा है और यहाँ किसी पेट्रोल पंप के होने की आशंका जताई जा रही है।

किसी बग़ीचे में हम यह देख पा रहे है कि बहुत सारी हरियाली बनी हुई है और यहाँ हमे कोई भी मनुष्य नहीं दिख रहा है।

किसी खाली मैदान में हम यह देख पा रहे है की मैदान के किनारे से कोई विद्यालय या फिर कोई औद्योगिक चीज बनी हुई है ।

किसी मंदिर के बाहर से हम यह देख पा रहे है कि मंदिर का बहुत ही ऊँचा बना हुआ है। यहाँ अंदर की ओर हमें कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है।